हाथ में जूता लगाए हुए हैं।

इस तस्वीर को दुकान के आगे से लिया गया है।

ए_टी_एम के जो दरवाजा शीशा है उस पर कुछ पोस्टर लगाए हुए है।

यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं मछली को बेच रहे हैं।

मछली को तिरपाल के ऊपर रखे हुए हैं।

जैसे कि कुछ लोग आ लाल पहने हुए है।

यहां बहुत सारा सामान रखी गए हैं।

और अंदर रैक में बहोत सारे सामान रखे गए हैं।

उनके नीचे में बहुत सारे अह पेड़ लगाए हुए हैं छोटे छोटे ग्रास ।

इस तस्वीर को रूम के अंदर से लिया गया है।

ईंटों ईटों से लगा हुआ है।

हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा।

इस तस्वीर में हमें दो बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग के उप उस पार भी घर हैं।

हां ज्यादातर लोगों ने सफेद पहने हैं ब्लू पहने है काला पहने हैं लुंगी पहने हैं।

इस तस्वीर को रस्ते से लिया गया है।

एक बाइक रखा हुआ है। बाइक के पास एक लड़का है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

दीवार का रंग सफेद है।

यहां बहुत बड़ा पेड़ है।

यहां दो लड़के खड़े होकर बना रहा है।

इस तस्वीर को एक रूम से लिया गया है।